ये पहाड़ी जगह दिख रहा है जंगल झाडी-उड़ी बहुत अच्छा दिख रहा है हरा-भरा पेड़-पोधा --

कुछ वस्तु भी दिखाई दे रहे हैं जो नीचे उजला का रखा हुआ हैं उजला टाइप है क्या है?

पुल बहुत सुंन्दर हैं लोहे का चैनल का बना हुआ पुल है।

पूल बहुत ही सुंन्दर जगह हैं अच्छा लग रहा है देख के।

लग रहा है दो-तीन लाइन है लाइनें दिख रही हैं कुछ लाइन में पटरी भी आ रही है दिख रही है ।